और बॉडी लोशंस है फेस वॉश है यहां पर और छोटे-छोटे डब्बों में कोल्ड क्रीम्स हुए हैं जेल्स हैं और सर के कांटे भी हैं।

और एक आदमी है जो झुक कर इसके अंदर कुछ रिपेयर कर रहा हैं।

ये इंग्लिश एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलते हैं यहां पर--

और जो यहां पर टाइल्स है वो क्रीम कलर के और ब्राउन कलर के हैं।

पर एक जिम है इसमें बहुत सारे मशींस रखे हुए हैं पोस्चर्स लगाए हुए हैं बॉडी बिल्डर्स के --

और यहां पर पानी का डब्बा भी रखा हुआ है।

जो लाइटिंग्स है उसका रिफ्लेक्शन टाइल्स पे दिखाई दे रहा है।

और यहां पर बहुत सारे पत्थर हैं रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है।

और यहां पर रेलवे स्टेशन में ब्लू कलर का टिन शेड मारा हुआ है।

जिसमें बहुत सारे कोल्ड्रिंक्स रखे हुए हैं।

यहां पर बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है फंक्शन का--

ये एक जिम है यहां पर बहुत सारे लोग जिम कर रहे हैं।

नगर निगम पार्क शिमला लिखा हुआ है।

और बहुत सारे बच्चे यहां पर कंप्यूटर्स ऑन करके इन्हें सीख भी रहे हैं।

शाम का समय है यहां पर और यहां पर दो आदमी ठहरे हुए हैं।

काटे काटे जैसे शेप में इसको दिया गया है।

जनरल स्टोर्स के ऊपर कुछ नमकीन की फोटोज हैं।

यहां पर पिंक एंड वाइट कलर के बलूनस लगाए गए हैं और लाइटिंग भी है।

येलो एंड व्हाइट कलर की येलो एंड ब्लैक कलर की मशीन्स रखी हुई हैं।

इसमें शिमला मिर्च है भेंडी है नत्रालु है।

और लकड़ी का शेप दिया हुआ इसको और पूरी बिल्डिंग का कलर क्रीम एंड येलो में है डार्क --

यहां पर कुछ फूलों के हार बनाए हुए हैं जिसमें वाइट कलर के और ऑरेंज कलर के हैं।